मुझे इस फोटो में बुद्धा की तस्वीर दिखाई दे रही है।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

मुझे इस फोटो में कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

मुझे इस फोटो में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं।